इस तस्वीर के अंदर मेरे को एक बहुत सारी मछलियां दिख रही हैं।

ये एक मॉडल भी हो सकता है।

अंदर लाल रंग के फूल से डेकोरेशन कर रखी--

इस तस्वीर के अंदर मेरे को एक ऑटो स्टैंड दिख रिया है यहां पे बहुत सारे ऑटो लगे हुए हैं।